एक औरत बैठी है और आगे पेड़ हैं।

यहाँ पे एक बोट खड़ी हुई है पानी के अंदर और ब्रिज बना है बहोत बड़ा रैलिंग टाइप का और साइड में घास हो रही है।

और बहुत अलग कलर की कार खड़ी है और उसके जस्ट सामने ब्रिज बन रहा है।

बस खड़ी हुई है इसके अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है और एक अंदर से --